स्टूडेंटों को कंप्यूटर सिखाया जाता है।

और यह जिला उमरिया में स्थित है।

जिसके समस्या हो पीछे मे आ सकता है।

यहां पे अच्छे दाम में कपड़े मिलते हैं।

और यहां पे पानी पीने आते हैं जानवर।

ये उमरिया का एक मात्र स्टेडियम है।

एक बहोत ही बड़ी नदी या फिर तालाब है।

यहां पे हरियाली भी है चारों तरफ यहां पहाड़ बड़े-बड़े हैं।

जो कि बहोत ही प्यारा व्यू है।

ये एक मंदिर है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

इसपे बहोत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते है।

ये एक बहोत बड़ा तालाब या नदी है।

एक हार्डवेयर की बहुत अच्छी दुकान है।

यहां रात का समय है अभी--

यहां पर बेड रखा हुआ है।

बस में यहां लोग सवारी करते है।

और कुछ दवाइयां मशीने रखी हुई है।

जोकि बहोत ही लंबी चौड़ी--

ये इसका नाम अर्पित हार्डवेयर लोहड़ा--

ये एक हार्डवेयर की दुकान बनी हुई है।

जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रतम कार्यक्रम--

और यह किसी की शादी में आए हुए हैं।

पेप्सी कोको कोला अन्य ड्रिंक्स मिलते हैं।

यहां पर बहुत से फूल लगे हुए हैं।